मे एक पेट्रोल पम्प नज़र आ रहा है जो की सफ़ेद और नील कलर का है । पेट्रोल पम्प मे बहुत सारे ट्रक और गाड़ी भी खड़े हुये है ।

सामने एक बड़ा सा स्टोरेज रूम नजर आ रहा है मम उ-एमएम जो देख के एक मॉल लग रहा है।

सामने बहुत बड़ा एक मैदान नज़र आ रहा है जिस के साइड में बहुत सारे घर भी नज़र आ रहे है । दूर कुछ बड़े-बड़े पहाड़ भी दिख रहे है जो की हम सब कुछ पेड़-पौधे से ढका हुआ है।

पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा टावर भी नज़र आ रहा है । असमान नीला एंवम सफ़ेद मिक्स से ढका हुआ है।

बहुत सारे सामान रखा हुआ है बाल काटने का दुकान नीले रंग का है शटर वाला है दुकान।

सफेद है मैदान के अगल बगल में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहा है आसमान नीला है वन सफेद मेघ से ढका हुआ है।

जंगल में कुछ रहिम भी नज़र आ रहा है जो की काफी सुंदर ऐवम प्यारा दिख रहा है।

बाहर बहोत सारी साइकल्स खड़े हुए है एन्ड दुकान में लोगो की भीड भी नज़र आ रहा है।

मैदान के चारों तरफ पेड़-पोधो से भरा हुआ है दूर कुछ टावर भी नज़र आ रहे है ।

हमे एक बड़ा सा लोहे का गेट नजर आ रहा है जो की काले कलर का है गेट में कुछ लिखा हुआ भी है गेट के पीछे बहुत बड़ा एक बिल्डिंग नजर अरहा आ रहा है उसके चरों तरफ पेड़ पोधे है।

आसमान नीला एवं सफेद मेघ से ढका हुआ है।